एक यहाँ बोट है | गाया का है।

थके हुए हैं थेला भी ऐसा है मौसंबि भी कटे हुए हैं बहुत सारे मौसंबि